यहाँ बहुत सारे सफेद रंग की फूल दस्ते लगे हुए है ऊपर फूलों की भी सजावटें हो रखी है बहुत सारे लोग यहाँ खड़े है।

आगे एक कुड़ा दानी भी रखा हुआ है नीचे छोटी-छोटी घासे उगी हुई है।

उपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और पीछे बहुत सारी इमारत नजर आ रही--

पीछे एक गमला रखा हुआ है जो घर है उसका रंग सफ़ेद है।

ये एक सड़क की तस्वीर है यहा एक तोप नजर आ रहा है।

यह दृश एक बाजार की है यहा बहुत सारे कपड़े बिक रहे है।

यह एक फुवारे का दृश है यहा बहुत सारे लाइटे लगी हुए है।